इथे एक कार आहे अणि एक मनसा नी कार थ सर्विसिंग करत आहे.

बहोत सारे बस है एक बस स्टैंड है।

और यहां पर रोड हैं और यहां पर लाइटिंग भी हैं और यहां पर गेट बना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे कपड़े बहुत ही अच्छे से--

ब्राउन कलर का बेड है और यहां पर कुछ दुकानें है उसके सेटअप दिखाई दे रहे है।

गुलाबी का कलर का गुलाब बहुत सारे यहां पर पेड़ पौधे हैं।

यहां पर ये एक कपड़े का दुकान है और यहां पर एक लड़की--

कुछ लोग बाखड़े के ऊपर बैठे हुए हैं।

कार रुकी हुए हैं सफेद रंग के और एक टू व्हीलर है।

ओ आदमी गोगल लगाकर बैठा हुआ है।